ये एक रोड दिख रही है ढेर सारे गाड़ियां दिख रही हैं।

यहाँ पे एक औरत फ़ोटो के लिए पोज़ देके खड़ी हुई दिख रही है| एक बड़ा सा कारपेट --